और उस पर कुछ हरे और लाल रंग की धारियां खींची हुई है।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

सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि बाइक है।

सामने एक बड़ा सा स्टेज पड़ा हुआ है।

और एक बड़ी सी स्टेज रखी हुई है जिस पर कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

पीछे की तरफ बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर एक मकान और दिखाया गया है।

एक बड़ा सा लंबा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक मेज पर लोहे का बड़ा सा मशीन रखा हुआ है।

इस फोटो में कुछ लोहा फैक्ट्री दिखाई गई है।

सामने कुछ रैक बनी हुई हैं जो कि शीशे की हैं।

पीछे कुछ गाड़िया खड़ी हुई है जो सफेद रंग की है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है।

सामने एक सफेद रंग का सोफा दिखाई दे रहा है।

उसके पास में एक लंबा सा सोफा और पड़ा हुआ है।

पंडाल के आगे बहोत सारे फूल लगे हुए हैं और कुछ पीले रंग की मालाए पड़ी हुई है।

पीछे की तरफ कुछ क्रॉस के निशान दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

सामने एक बोर्ड पर आयुष्मान कार्ड लिखा हुआ है।

नीचे कुछ पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं और एक खंभा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर एक तार जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने एक दीवार पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक शामली लिखा हुआ है जो नीले रंग से लिखा हुआ है।

सामने कुछ गमले और दिखाई दे रहे हैं जिनमें कुछ पौधे लगे हुए हैं।

एक नीली और एक हरी की दिखाई दे रही है।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

रैक के अंदर बहोत सारे बलफ जलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें से चांदना आ रहा है।

आगे एक बड़ी सी बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने से आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कंधे पर एक बैग है।

नीचे की तरफ एक नहर बहती हुई दिखाई दे रही है।

मने तरफ़ एक थैली लटकी हुई दिखाई दे रही है और एक बोर्ड पर क्यू_आर लगा हुआ है।

एक बोर्ड पर बहुत सारे फूल बने हुए हैं।

और सामने कुछ छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

की तरफ लाल रंग की मैट रखी हुई हैं।

कुछ कुर्सियां नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और एक बड़ा सा पंडाल दिखाई दे रहा है।

जिसके पास में दो आदमी खड़े हुए हैं।

एक कैंपर दुकान के अंदर रखा हुआ है।

एक बड़ी सी काउंटर और सेफ दिखाई दे रही है।